नीला रंग का दरवाजा है और घर के साइड मे सूखे हुए पेड़ लगे हुए है।

चार विंडोस दिख रहे हैं। विंडोस के बहार जाली लगी हुई है। विंडोस के नीचे बुटीक करके इंलिश में लिखा गया है।

छवि में एक सुन्दर सा मन्दिर दिखाया गया है मंदिर के बाहर के गेट पर लिखा हुआ है एक गेट बैनर पे गेट नंबर फोर ।

और और भी कहीं तितली फल-फूल दिख रहें हैं सफेद लाल गुलाबी नीले सरे सारे रंग के फूल दिख रहें हैं।

छबि में ऑटो-बसिस स्टैंड दिखाई दे रहा है एक लड़की साइड में खड़ी हुई है।